दूरी तय करते हैं वह मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और हम बाजार ई रिक्शा से जाते हैं।

टैम्पो लेने के लिए एजेंसी में आते हैं और टैम्पो खरीदकर अपने घर ले जाते हैं।

ऐसे उतर कर हेलीकॉप्टर पहुँचाया जाता है और हेलीकॉप्टर के अन्दर जाया जाता है।

और सिंचाई के समय पर किसानो को खेतों के लिए पानी समय से दिया जा सके।

बना हुआ है उसके पास में दहेज़ का सामान भी रखा हुआ है।